इसमें एक मरकरी खम्भा लगा हुआ है सामने से वायर आ रहे हैं पीछे के तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके पास आसमान नजर आ रहा है।

ब्लैक कलर की है सामने की तरफ बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं जिसमें सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये शांत वातावरण है।

कुछ घास-पूस के भी बने हुए हैं सामने की तरफ बड़े-बड़े पहाड़ हैं पहाड़ो के ऊपर छोटे-छोटे पेड़ लग चके हैं कुछ पहाड़ो पर बड़े-बड़े पेड़ हैं कुछ पहाड़ो पे पत्थर लगे हुए हैं।

दूसरे फ्लोर पर एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमे ओयो होटल वेरिएन्टरा लिखा हुआ है।

ये बेस्टमेन्ट में पार्किंग एरिया भी बना हुरा है सामने की तरफ अँधेरा अँधेरा हो रहा है ये नाईट का समय है।

सामने की तरफ इसमें पार्किंग लॉन बनी हुई हैं सामने की तरफ एक बना हुआ है जिसमे एक छत्री लगी हुई है सामने की तरफ बैठने की व्यवस्ता भी बनी हुई है।